फोटो के हिसाब से ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें कुछ मकान-सा है और ये --

इसमें कुछ पर्सन दिखाए गए हैं या तो ये किसी टूर पे जा रहे हैं या फिर कोई पर्यटन स्थल पे जा रहे है।

इस फोटो में तीन ट्रैक दिखाए गये हैं। रेलवे ट्रैक और विजुअल ट्रैक से एक ट्रेन जाती हुई दिख रही है। ऊपर से एक ब्रिज दिख रहा है।

इनको खाना बहोत ही फायदेमंद रहता है।

जय श्री कृस्ना मैं इनको सत सत नमन करता हु।